मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार
मन की बात का इस वर्ष का यह आख़िरी कार्यक्रम है और संयोग देखिए कि आज वर्ष 2017 का भी आख़िरी दिन है
इस पूरे वर्ष बहुत सारी बाते हमने और आपने शेयर की
मन की बात के लिए आपके ढ़ेर सारे पत्र कमेंट्स विचारों का ये आदानप्रदान मेरे लिए तो हमेशा एक नई ऊर्जा लेकर के आता है
कुछ घंटों बाद वर्ष बदल जाएगा लेकिन हमारी बातों का यह सिलसिला आगे भी इसी तरह जारी रहेगा
आने वाले वर्ष में हम और नयीनयी बातें करेंगे नये अनुभव शेयर करेंगे
आप सबको 2018 की अनेकअनेक शुभकामनाएँ
अभी पिछले दिनों 25 दिसम्बर को विश्वभर में क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया गया
भारत में भी लोगों ने काफी उत्साह से इस त्योहार को मनाया
क्रिसमस के अवसर पर हम सब ईसा मसीह की महान शिक्षाओं को याद करते हैं और ईसा मसीह ने सबसे ज़्यादा जिस बात पर बल दिया था वह था सेवाभाव
सेवा की भावना का सार हम बाइबल में भी देखते हैं
थे सोन ओएफ मन हस कोम नोट टो बीई सर्व्ड
बट टो सर्व
एंड टो गिव हिस लाइफ एएस ब्लेसिंग
टो अल्ल ह्यूमनकाइंड
यह दिखाता है कि सेवा का माहात्म्य क्या है विश्व की कोई भी जाति होगी धर्म होगा परम्परा होगी रंग होंगे लेकिन सेवाभाव ये मानवीय मूल्यों की एक अनमोल पहचान के रूप में है
हमारे देश में निष्काम कर्म की बात होती है यानी ऐसी सेवा जिसमें कोई अपेक्षा न हो
हमारे यहाँ तो कहा गया है सेवा परमो धर्मः
जीवसेवा ही शिवसेवा और गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस तो कहते थे शिवभाव से जीवसेवा करें यानी पूरे विश्व में ये सारे समान मानवीय मूल्य हैं
आइए हम महापुरुषों का स्मरण करते हुए पवित्र दिवसों की याद करते हुए हमारी इस महान मूल्य परम्परा को नयी चेतना दें नयी ऊर्जा दें और ख़ुद भी उसे जीने का प्रयास करें
मेरे प्यारे देशवासियो यह वर्ष गुरुगोविन्द सिंह जी का 350वाँ प्रकाश पर्व का भी वर्ष था
गुरुगोविन्द सिंह जी का साहस और त्याग से भरा असाधारण जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है
गुरुगोविन्द सिंह जी ने महान जीवन मूल्यों का उपदेश दिया और उन्हीं मूल्यों के आधार पर उन्होंने अपना जीवन जिया भी
एक गुरु कवि दार्शनिक महान योद्धा गुरुगोविन्द सिंह जी ने इन सभी भूमिकाओं में लोगों को प्रेरित करने का काम किया
उन्होंने उत्पीड़न और अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ी
लोगों को जाति और धर्म के बंधनों को तोड़ने की शिक्षा दी
इन प्रयासों में उन्हें व्यक्तिगत रूप से बहुत कुछ गँवाना भी पड़ा
लेकिन उन्होंने कभी भी द्वेष की भावना को जगह नहीं दी
जीवन के हरपल में प्रेम त्याग और शांति का सन्देश कितनी महान विशेषताओं से भरा हुआ उनका व्यक्तित्व था ये मेरे लिए सौभाग्य की बात रही कि मैं इस वर्ष की शुरुआत में गुरुगोविन्द सिंह जी 350वीं जयन्ती के अवसर पर पटनासाहिब में आयोजित प्रकाशोत्सव में शामिल हुआ
आइए हम सब संकल्प लें और गुरुगोविन्द सिंह जी की महान शिक्षा और उनके प्रेरणादायी जीवन से सीख लेते हुए जीवन को ढालने का प्रयास करें
एक जनवरी 2018 यानी कल मेरी दृष्टि से कल का दिन एक स्पेशियल दिवस है
आपको भी आश्चर्य होता होगा नया वर्ष आता रहता है एक जनवरी भी हर वर्ष आती है लेकिन जब स्पेशियल की बात करता हूँ तो सचमुच में मैं कहता हूँ कि स्पेशियल है जो लोग वर्ष 2000 या उसके बाद जन्मे हैं यानी 21वीं सदी में जिन्होंने जन्म लिया है वे एक जनवरी 2018 से एलिजिबल वोटर्स बनना शुरू हो जाएँगे
भारतीय लोकतंत्र 21वीं सदी के वोटर्स का न्यू इंडिया वोटर्स का स्वागत करता है
मैं हमारे इन युवाओं को बधाई देता हूँ और सभी से आग्रह करता हूँ कि आप स्वयं को वोटर के रूप में रजिस्टर करें
पूरा हिन्दुस्तान आपको 21वीं सदी के वोटर के रूप में स्वागत करने के लिए लालायित है
21वीं सदी के वोटर के नाते आप भी गौरव अनुभव करते होंगे
आपका वोट न्यू इंडिया का आधार बनेगा
वोट की शक्ति लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति है
लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए वोट सबसे प्रभावी साधन है
आप केवल मत देने के अधिकारी नहीं बन रहे हैं
आप 21वीं सदी का भारत कैसा हो 21वीं सदी के भारत के आपके सपने क्या हों आप भी तो भारत की 21वीं सदी के निर्माता बन सकते हैं और इसकी शुरुआत एक जनवरी से विशेष रूप से हो रही है
और आज अपनी इस मन की बात में मैं 18 से 25 वर्ष के ऊर्जा और संकल्प से भरे हमारे यशस्वी युवाओं से बात करना चाहता हूँ
मैं इन्हें न्यू इंडिया यूथ मानता हूँ
न्यू इंडिया यूथ का मतलब होता है उमंग उत्साह और ऊर्जा
मेरा विश्वास है कि हमारे इन ऊर्जावान युवाओं के कौशल और ताक़त से ही हमारा न्यू इंडिया का सपना सच होगा
जब हम नए भारत की बात करते हैं तो नया भारत जो ये जातिवाद साम्प्रदायवाद आतंकवाद भ्रष्टाचार के ज़हर से मुक्त हो
गन्दगी और ग़रीबी से मुक्त हो
न्यू इंडिया जहाँ सभी के लिए समान अवसर हों जहाँ सभी की आशाआकांक्षाएँ पूरी हों
नया भारत जहाँ शांति एकता और सद्भावना ही हमारा गाइडिंग फोर्स हो
मेरा यह न्यू इंडिया यूथ आगे आए और मंथन करे कि कैसे बनेगा न्यू इंडिया
वो अपने लिए भी एक मार्ग तय करे जिनसे वो जुड़ा हुआ है उनको भी जोड़े और कारवाँ बढ़ता चले
आप भी आगे बढें देश भी आगे बढ़े
अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे एक विचार आया कि क्या हम भारत के हर ज़िले में एक मॉक पार्लामेंट आयोजित कर सकते हैं जहाँ ये 18 से 25 वर्ष के युवा मिलबैठ करके न्यू इंडिया पर मंथन करें रास्ते खोजें योजनाएँ बनाएँ कैसे हम हमारे संकल्पों को 2022 से पहले सिद्ध करेंगें कैसे हम एक ऐसे भारत का निर्माण कर सकते हैं जिसका सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था महात्मा गाँधी ने आज़ादी के आंदोलन को जनआन्दोलन बना दिया था
मेरे नौजवान साथियो समय की माँग है कि हम भी 21वीं सदी के भव्यदिव्य भारत के लिए एक जनआन्दोलन खड़ा करें
विकास का जनआन्दोलन
प्रगति का जनआन्दोलन
सामर्थ्यवानशक्तिशाली भारत का जनआन्दोलन
मैं चाहता हूँ कि 15 अगस्त के आसपास दिल्ली में एक मॉक पार्लामेंट का आयोजन हो जहाँ प्रत्येक ज़िले से चुना गया एक युवा इस विषय पर चर्चा करे कि कैसे अगले पाँच सालों में एक न्यू इंडिया का निर्माण किया जा सकता है संकल्प से सिद्धि कैसे प्राप्त की जा सकती है आज युवाओं के लिए ढ़ेर सारे नये अवसर पैदा हुए हैं
स्किल डेवलपमेंट से लेकर के इनोवेशन और आंत्रप्रिन्योरशिप में हमारे युवा आगे आ रहे हैं और सफल हो रहे हैं
मैं चाहूँगा कि इन सारे अवसरों की योजनाओं की जानकारी इस न्यू इंडिया यूथ को एक जगह कैसे मिले और इस बारे में कोई एक ऐसी व्यवस्था खड़ी की जाए ताकि 18 वर्ष का होते ही उसे इस दुनिया के बारे में इन सारी चीज़ों के बारे में सहज रूप से जानकारी प्राप्त हो और वह आवश्यक लाभ भी ले सके
मेरे प्यारे देशवासियो पिछली मन की बात में मैंने आपसे पॉजिटिविटी के महत्व के बारे में बात की थी
मुझे संस्कृत का एक श्लोक याद आ रहा है
उत्साहो बलवानार्य नास्त्युत्साहात्परं बलम्
सोत्साहस्य च लोकेषु न किंचिदपि दुर्लभम्
इसका मतलब होता है उत्साह से भरा एक व्यक्ति अत्यन्त बलशाली होता है क्योंकि उत्साह से बढ़ कर कुछ नहीं होता
पॉजिटिविटी और उत्साह से भरे व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं
अंग्रेज़ी में भी लोग कहते हैं पेसिमिज्म लीड्स टो वीकनेस आप्टिमिज्म टो power
मैंने पिछली मन की बात में देशवासियों से अपील की थी कि वर्ष 2017 के अपने पॉजिटिव मोमेंट्स शेयर करें और 2018 का स्वागत एक पॉजिटिव एटमॉस्फियर में करें
मुझे बहुत ख़ुशी हुई कि भारी संख्या में लोगों ने सोशल मीडिया प्लैटफार्म माइगोव और नरेंद्रमोदी App पर बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस दिया अपने अनुभव शेयर किये
पॉजिटिव इंडिया हैशटैग के साथ लाखों ट्वीट्स किये गए जिसकी पहुँच करीबकरीब डेढ़सौ करोड़ से भी अधिक लोगों तक पहुँची
एक तरह से पॉजिटिविटी का जो संचार भारत से आरंभ हुआ वह विश्व भर में फ़ैला
जो ट्वीट्स और रिस्पांस आये वे सचमुच में इंस्पायरिंग थे
एक सुखद अनुभव था
कुछ देशवासियों ने इस वर्ष के उन घटनाक्रमों को साझा किया जिनका उनके मन पर विशेष प्रभाव पड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ा
कुछ लोगों ने अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों को भी शेयर किया
मेरा नाम मीनू भाटिया है
मैं मयूर विहार पॉकेटवन फेज़ वन दिल्ली में रहती हूँ
मेरी बेटी एमबीए करना चाहती थी
जिसके लिए मुझे बैंक से लोआन चाहिए था जो मुझे बड़ी आसानी से मिल गया और मेरी बेटी की पढ़ाई चालू रही
मेरा नाम ज्योति राजेंद्र वाडे है
मैं बोडल से बात कर रही हूँ
हमने एक रुपया महीने का कटता वो बीमा था ये मेरे पति ने करवाया हुआ था
और उनका एक्सीडेंट में निधन हो गया था
उस समय हमारी क्या हालत हुई हमको ही पता
सरकार की ये मदद से हमको बहुत लाभ हुआ और में थोड़ी संभली उससे
मेरा नाम संतोष जाधव है
हमारे गाँव से भिन्नर गाँव से 2017 से नेशनल हाइवे गया है
उसकी वजह से हमारी सड़कें वो बहुत अच्छे हो गये और बिजनेस भी बढ़ने वाला है
मेरा नाम दीपांशु आहूजा मोहल्ला सादतगंज ज़िला सहारनपुर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ
दो घटनाएँ हैं जो हमारे भारतीय सैनिकों के द्वारा एक तो पाकिस्तान में उनके द्वारा की गयी सर्जिकल स्ट्राइक जिससे कि आतंकवाद के लॉन्चिंग पैड्स थे उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया और साथहीसाथ हमारे भारतीय सैनिकों का डोकलाम में जो पराक्रम देखने को मिला वो अतुलनीय है
मेरा नाम सतीश बेवानी है
हमारे इलाके में पानी की समस्या थी बिलकुल पिछले 40 साल से हम आर्मी के पाइप लाइन पर निर्भर हुआ करते थे
अब अलग से ये पाइप लाइन हुई है इंडिपेंडेंट तो ये सब बड़ी उपलब्धि है हमारी 2017 में
ऐसे अनेक लोग हैं जो अपनेअपने स्तर पर ऐसे कार्य कर रहे हैं जिनसे कई लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है
वास्तव में यही तो न्यू इंडिया है जिसका हम सब मिल कर निर्माण कर रहे हैं
आइए इन्हीं छोटीछोटी खुशियों के साथ हम नववर्ष में प्रवेश करें नववर्ष की शुरूआत करें और पॉजिटिव इंडिया से प्रोग्रेसिव इंडिया की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाएँ
जब हम सब पॉजिटिविटी की बात करते हैं तो मुझे भी एक बात शेयर करने का मन करता है
हाल ही में मुझे कश्मीर के प्रशासनिक सेवा के टॉपर अंजुम बशीर खान खट्टक अंजुम बशीर खान खट्टक की प्रेरणादायी कहानी के बारे में पता चला
उन्होंने आतंकवाद और घृणा के दंश से बाहर निकल कर कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वाइस की परीक्षा में टॉप किया है
आप ये जानकर के हैरान रह जाएंगे कि 1990 में आतंकवादियों ने उनके पैतृकघर को जला दिया था
वहाँ आतंकवाद और हिंसा इतनी अधिक थी कि उनके परिवार को अपनी पैतृकज़मीन को छोड़ के बाहर निकलना पड़ा
एक छोटे बच्चे के लिए उसके चारों ओर इतनी हिंसा का वातावरण दिल में अंधकारात्मक और कड़वाहट पैदा करने के लिए काफ़ी था पर अंजुम ने ऐसा नहीं होने दिया
उन्होंने कभी आशा नहीं छोड़ी
उन्होंने अपने लिए एक अलग रास्ता चुना जनता की सेवा का रास्ता
वो विपरीत हालात से उबर कर बाहर आए और सफलता की अपनी कहानी ख़ुद लिखी
आज वो सिर्फ जम्मू और कश्मीर के ही नहीं बल्कि पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए हैं
अंजुम ने साबित कर दिया है कि हालात कितने ही ख़राब क्यों न हों सकारात्मक कार्यों के द्वारा निराशा के बादलों को भी ध्वस्त किया जा सकता है
अभी पिछले हफ़्ते ही मुझे जम्मूकश्मीर की कुछ बेटियों से मिलने का अवसर मिला
उनमें जो जज़्बा था जो उत्साह था जो सपने थे और जब मैं उनसे सुन रहा था वो जीवन में कैसेकैसे क्षेत्र में प्रगति करना चाहती हैं
और वो कितनी आशाभरी ज़िन्दगी वाले लोग थे उनसे मैंने बातें की कहीं निराशा का नामोनिशान नहीं था उत्साह था उमंग था ऊर्जा थी सपने थे संकल्प थे
उन बेटियों से जितना समय मैंने बिताया मुझे भी प्रेरणा मिली और ये ही तो देश की ताकत हैं ये ही तो मेरे युवा हैं ये ही तो मेरे देश का भविष्य हैं
मेरे प्यारे देशवासियो हमारे देश के ही नहीं जब भी कभी विश्व के प्रसिद्ध धार्मिकस्थलों की चर्चा होती है तो केरल के सबरीमाला मंदिर की बात होनी बहुत स्वाभाविक है
विश्वप्रसिद्ध इस मंदिर में भगवान अय्यप्पा स्वामी का आशीर्वाद लेने के लिए हर वर्ष करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं
जहाँ इतनी भारी संख्या में श्रद्धालु आते हों जिस स्थान का इतना बड़ा माहात्म्य हो वहाँ स्वच्छता बनाये रखना कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है और विशेषकर उस जगह पर जो पहाड़ियों और जंगलों के बीच स्थित हो
लेकिन इस समस्या को भी संस्कार में कैसे बदला जा सकता है समस्या में से उबरने का रास्ता कैसे खोजा जा सकता है और जनभागीदारी में इतनी क्या ताक़त होती है ये अपने आप में सबरीमाला मंदिर एक उदाहरण के तौर पर है
पीविजयन नाम के एक पुलिस अफ़सर ने पुण्यम पुन्कवाणम पुण्यम पूंकवनम एक प्रोग्राम शुरू किया और उस प्रोग्राम के तहत स्वच्छता के लिए जागरूकता का एक स्वैच्छिकअभियान शुरू किया
और एक ऐसी परम्परा बना दी कि जो भी यात्री आते हैं उनकी यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि वो स्वच्छता के कार्यक्रम में कोईनकोई शारीरिक श्रम न करते हों
इस अभियान में न कोई बड़ा होता है न कोई छोटा होता है
हर यात्री भगवान की पूजा का ही भाग समझ करके कुछनकुछ समय स्वच्छता के लिए करता है काम करता है गन्दगी हटाने के लिए काम करता है
हर सुबह यहाँ सफाई का दृश्य बड़ा ही अद्भुत होता है और सारे तीर्थयात्री इसमें जुट जाते हैं
कितनी बड़ी सेलिब्रिटी क्यों न हो कितना ही धनी व्यक्ति क्यों न हो कितना ही बड़ा अफ़सर क्यों न हो हर कोई एक सामान्ययात्री के तौर पर इस पुण्यम पुन्कवाणम पुण्यम पूंकवनम कार्यक्रम का हिस्सा बन जाते हैं सफाई को करके ही आगे बढ़ते हैं
हम देशवासियों के लिए ऐसे कई उदाहरण हैं
सबरीमाला में इतना आगे बढ़ा हुआ ये स्वच्छता अभियान और उसमें पुण्यम पुन्कवाणम पुण्यम पूंकवनम ये हर यात्री के यात्रा का हिस्सा बन जाता है
वहाँ कठोरव्रत के साथ स्वच्छता का कठोरसंकल्प भी साथसाथ चलता है
मेरे प्यारे देशवासियो 2 अक्तूबर 2014 पूज्य बापू की जन्म जयन्ती पर हम सब ने संकल्प किया है कि पूज्य बापू का जो अधूरा काम है यानी कि स्वच्छभारत गन्दगी से मुक्तभारत
पूज्य बापू जीवनभर इस काम के लिए जूझते रहे कोशिश भी करते रहे
और हम सब ने तय किया कि जब पूज्य बापू की 150वीं जयंती हो तो उन्हें हम उनके सपनों का भारत स्वच्छ भारत देने की दिशा में कुछनकुछ करें
स्वच्छता की दिशा में देशभर में व्यापक स्तर पर प्रयास हो रहा है
ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में व्यापक जनभागीदारी से भी परिवर्तन नज़र आने लगा है
शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर की उपलब्धियों का आकलन करने के लिए आगामी 4 जनवरी से 10 मार्च 2018 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 किया जाएगा
ये सर्वे चार हज़ार से भी अधिक शहरों में लगभग चालीस 40 करोड़ आबादी में किया जाएगा
इस सर्वे में जिन तथ्यों का आकलन किया जाएगा उनमें हैं शहरों में खुले में शौच से मुक्ति कूड़े का कलेक्शन कूड़े को उठा कर ले जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था वैज्ञानिक तरीक़े से कूड़े की प्रोसेसिंग बिहेवियरल चंगे के लिए किए जा रहे प्रयास कैपेसिटी बिल्डिंग और स्वच्छता के लिए किये गए इनोवेटिव प्रयास और इस काम के लिए जनभागीदारी
इस सर्वे के दौरान अलगअलग दल जा करके शहरों का इंस्पेक्शन करेंगे
नागरिकों से बात करके उनकी प्रतिक्रिया लेंगे
स्वच्छता App के उपयोग का तथा विभिन्न प्रकार के सेवास्थलों में सुधार का एनालिसिस करेंगे
इसमें यह भी देखा जाएगा कि क्या ऐसी सारी व्यवस्था शहरों के द्वारा बनायी गई हैं जिनसे शहर की स्वच्छता एक जनजन का स्वभाव बने शहर का स्वभाव बन जाए
स्वच्छता सिर्फ़ सरकार करे ऐसा नहीं
हर नागरिक एवं नागरिक संगठनों की भी बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी है
और मेरी हर नागरिक से अपील है कि वे आने वाले दिनों में जो स्वच्छतासर्वे होने वाला है उसमें बढ़चढ़ करके भाग लें
और आपका शहर पीछे न रह जाए आपका गलीमोहल्ला पीछे न रह जाए इसका बीड़ा उठाएं
मुझे पूरा विश्वास है कि घर से सूखाकूड़ा और गीलाकूड़ा अलगअलग करके नीले और हरे डस्टबिन का उपयोग अब तो आपकी आदत बन ही गई होगी
कूड़े के लिए रिड्यूस रियूज और रिसाइकिल का सिद्धांत बहुत क़ारगर होता है
जब शहरों की रैंकिंग इस सर्वे के आधार पर की जाएगी अगर आपका शहर एक लाख से अधिक आबादी का है तो पूरे देश की रैंकिंग में और एक लाख से कम आबादी का है तो क्षेत्रीय रैंकिंग में ऊँचेसेऊँचा स्थान प्राप्त करे ये आपका सपना होना चाहिए आपका प्रयास होना चाहिए
4 जनवरी से 10 मार्च 2018 इस बीच होने वाले स्वच्छतासर्वेक्षण में स्वच्छता के इस हेल्थी कॉम्पिटिशन में आप कहीं पिछड़ न जाएँ ये हर नगर में एक सार्वजनिक चर्चा का विषय बनना चाहिए
और आप सब का सपना होना चाहिए हमारा शहर हमारा प्रयास हमारी प्रगतिदेश की प्रगति
आइए इस संकल्प के साथ हम सब फिर से एक बार पूज्य बापू का स्मरण करते हुए स्वच्छभारत का संकल्प लेते हुए पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करें
मेरे प्यारे देशवासियो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिखने में बहुत छोटी लगती हैं लेकिन एक समाज के रूप में हमारी पहचान पर दूरदूर तक प्रभाव डालती रहती हैं
आज मन की बात के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपके साथ ऐसी एक बात शेयर करना चाहता हूँ
हमारी जानकारी में एक बात आयी कि यदि कोई मुस्लिम महिला हजयात्रा के लिए जाना चाहती है तो वह महरम या अपने माले गार्डियन के बिना नहीं जा सकती है
जब मैंने इसके बारे में पहली बार सुना तो मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है ऐसे नियम किसने बनाए होंगें ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों और मैं जब उसकी गहराई में गया तो मैं हैरान हो गया आजादी के सत्तर 70 साल के बाद भी ये रिस्ट्रिक्शन लगाने वाले हम ही लोग थे
दशकों से मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा था लेकिन कोई चर्चा ही नहीं थी
यहाँ तक कि कई इस्लामिक देशों में भी यह नियम नहीं है
लेकिन भारत में मुस्लिम महिलाओं को यह अधिकार प्राप्त नहीं था
और मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने इस पर ध्यान दिया
हमारी मिनिस्ट्री ओएफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने आवश्यक कदम भी उठाए और ये सत्तर70 साल से चली आ रही परंपरा को नष्ट कर के इस रिस्ट्रिक्शन को हमने हटा दिया
आज मुस्लिम महिलाएँ महरम के बिना हज के लिए जा सकती हैं और मुझे खुशी है कि इस बार लगभग तेरह सौ 1300 मुस्लिम महिलाएँ महरम के बिना हज जाने के लिए एप्ली कर चुकी हैं और देश के अलगअलग भागों से केरल से ले करके उत्तर तक महिलाओं ने बढ़चढ़ करके हजयात्रा करने की इच्छा ज़ाहिर की है
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को मैंने सुझाव दिया है कि वो यह सुनिश्चित करें कि ऐसी सभी महिलाओं को हज जाने की अनुमति मिले जो अकेले एप्ली कर रही हैं
आमतौर पर हजयात्रियों के लिए लॉटरी सिस्टम है लेकिन मैं चाहूँगा कि अकेली महिलाओं को इस लॉटरी सिस्टम से बाहर रखा जाए और उनको स्पेशियल कैटेगरी में अवसर दिया जाए
मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ और ये मेरी दृढ़ मान्यता है कि भारत की विकास यात्रा हमारी नारीशक्ति के बल पर उनकी प्रतिभा के भरोसे आगे बढ़ी है और आगे बढ़ती रहेगी
हमारा निरंतर प्रयास होना चाहिए कि हमारी महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर समान अधिकार मिले समान अवसर मिले ताकि वे भी प्रगति के मार्ग पर एकसाथ आगे बढ़ सकें
मेरे प्यारे देशवासियो 26 जनवरी हमारे लिए एक ऐतिहासिकपर्व है
लेकिन इस वर्ष 26 जनवरी 2018 का दिन विशेष रूप से याद रखा जाएगा
इस वर्ष गणतंत्रदिवस समारोह के लिए सभी दस आसियान आसियान देशों के नेता मुख्यअतिथि के रूप में भारत आएँगे
गणतंत्रदिवस पर इस बार एक 1 नहीं बल्कि दस 10 मुख्य अतिथि होंगे
ऐसा भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है
2017 आसियान आसियान के देश और भारतदोनों के लिए ख़ास रहा है
आसियान आसियान ने 2017 में अपने 50 वर्ष पूरे किए और 2017 में ही आसियान आसियान के साथ भारत की साझेदारी के 25 वर्ष भी पूरे हुए हैं
26 जनवरी को विश्व के 10 देशों के इन महान नेताओं का एक साथ शरीक़ होना हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है
प्यारे देशवासियो ये त्योहारों का सीजन है
वैसे तो हमारा देश एक प्रकार से त्योहारों का देश है
शायद ही कोई दिवस ऐसा होगा जिसके नाम कोई त्योहार न लिखा गया हो
अभी हम सभी ने क्रिसमस मनाया है और आगे नयावर्ष आने वाला है
आने वाला नव वर्ष आप सभी के लिए ढ़ेरों खुशियाँ सुख और समृद्धि ले करके आए
हम सब नए जोश नए उत्साह नए उमंग और नए संकल्प के साथ आगे बढ़ें देश को भी आगे बढाएँ
जनवरी का महीना सूर्य के उत्तरायण होने का काल है और इसी महीने में मकरसंक्रांति मनायी जाती है
यह प्रकृति से जुड़ा पर्व है
वैसे तो हमारा हर पर्व किसीनकिसी रूप में प्रकृति से जुड़ा हुआ है लेकिन विविधताओं से भरी हमारी संस्कृति मेंप्रकृति की इस अद्भुत घटना को अलगअलग रूप में मनाने की प्रथा भी है
पंजाब और उत्तरभारत में लोहड़ी का आनंद होता है तो यूपीबिहार में खिचड़ी और तिलसंक्रांति की प्रतीक्षा रहती है
राजस्थान में संक्रांत कहें असम में माघबिहू या तमिलनाडु में पोंगल ये सभी त्योहार अपने आप में विशेष हैं और इनका अपनाअपना महत्व है
यह सभी त्योहार प्राय 13 से 17 जनवरी के बीच में मनाए जाते हैं
इन सभी त्योहारों के नाम अलगअलग लेकिन इनका मूलतत्व एक ही है प्रकृति और कृषि से जुड़ाव
सभी देशवासियो को इन त्योहारों की बहुतबहुत शुभकामनाएँ हैं
एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष 2018 की ढ़ेरों शुभकामनाएँ
बहुतबहुत धन्यवाद प्यारे देशवासियो
अब 2018 में फिर से बात करेंगे